यहां पर सामने की ओर एक गाड़ी है।

यहां पर एक साफ रोड है।

गाड़ियों की फोटो भी लगी हुई है।

फ्रिज भी है जो कि काले रंग का है।

सामने की ओर लिखा हुआ है वेलकम जेसॉन्ग रेस्टोरेंट ।

यहां पर छत का रंग सफ़ेद है।

यहां पर एक मोटरसाइकिल का शोरूम है।

यहां पर एक व्यक्ति फोटो स्टेट वाली मशीन को चला रहा है।

बोर्ड का रंग नीला है।

आसमान नीला हुआ पड़ा है।

और यहां पर एक लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर कई लोगों ने अपना टेंट लगाया हुआ है।

जहां पर बहोत सारे बच्चे नहा रही हैं।